तीन ओपनिंग दे सकते हैं इसके ऊपर छत नहीं है छत शायद टूट गई है।

यह का एस्ट्रो का सीन हैं।